गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू नेशनल पार्क का है।

और वहां पे उसके बाद में कुछ पाइप लगे हुए वहां दिखाई दे रहे हैं।

वहां पे बड़े बड़े पेंट के डब्बें जो है वो भी रखे हुए हैं।

और बहोत सारे पेड़ पौधे हैं दिखाई दे रहे हैं।

एक हॉल जैसे कुछ बना हुआ है।

बहुत सारे जो है बच्चों बच्चों के बैठने के लिए रंगी रंगीन चेयर --